और काफी सारी टाइल दिख रही हैं।

एक व्यक्ति भी खड़ा है जिसके मुंह को ब्लर किया गया है।

बाइक खड़ी है यह बाइक रॉयल एनफील्ड कंपनी की लगती है।

बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

यह किसी स्कूल का फोटो --

काफी दूर ग्राउंड से लिया गया है जिसमें--

एक बड़ा स्कूल दिख रहा है और काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली दिख रही है।

कुछ किताब में लिख रहा है।

इस फोटो में कुछ व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हैं।

और काफी सारे तकिए है और दो बेड भी पड़े है।

इस पर एक पोस्टर लगा है उस पर दीपक स्कूल ड्रेस --

अस्पताल के ऊपर दर्शन नर्सिंग होम लिखा है।

उसने मुंह तिरछा कर रखा है।

और कुछ व्यक्ति जिम करते भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की ओर कुछ नाचने के लिए टैले सी बिछा रखी है।

इनके पीछे काफी सारी डेकोरेशन की गई है।

साइड में एक बाइक खड़ी है।

समुंदर दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ कुर्सियां और कुछ मेज बिछी हैं।

यह किसी बिरयानी जैसा दिख रहा है।

इसमें से काफी तेज पानी गिरता हुआ दिख रहा है।

कुछ गुफा जैसा दिख रहा है।

ब्लैक कलर की पैंट पेहनी है।

यह कोई त्यौहार या किसी राज्य की रस्म जैसा लगता है।

बच्चा सा दिख रहा है।

किसी चीज पर सर्च कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि ये पत्थर टाइल का काम चल रहा है।

इसके ओर सब देख रहे हैं।

शटर के अंदर एक शीशे का गेट भी है।

अंदर ली साइड एक खड़ा है जिसके मुंह को ब्लर किया गया है।

कुछ व्यक्ति आते जाते दिख रहे हैं।

साइड में एक स्टैचू शेर का मुंह दिखे रहा है।

यह किसी फैक्ट्री के पीछे से फोटो लिया गया है।